यह एक रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट के अंदर कलरफुल बलूंस लगे हुए हैं।

शोकेस के अंदर अलग अलग तरह के पोस्ट रखे हुए हैं।

और दूसरे शोकेस के अंदर भी अलग अलग तरह का समान है।

उन बेंच पर बहोत सारी स्टूडेंट बैठे हुए हैं।

इस पार्क में बहुत सारे बच्चे झूल रहे है।

यह है एक कन्फेशनरी है इस कन्फेशनरी के चारों तरफ दीवार पर वाइट और ऑरेंज कलर के बलूंस लगे हुए हैं।

इस कंफेक्शनरी के अंदर खाने पीने का बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

और खुले में चारों तरफ पेड़ पौधे और बहुत सारे घर और गाड़ियां दिखाई दे रही है।

और उन स्लैब पर बहुत सारे खिलौने रखे हुए है।

ओ सामने एक ग्रिल लगी है येलो और ग्रीन कलर की।

उसके नीचे दो आदमी खड़े हैं और दो कैप रखी हुई है।

और उनके सामने एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

उसके ऊपर एक रेड और वाइट कलर का पोस्टर लगा हुआ है।

इस शॉप के अंदर चारों तरफ रैंक में शूज ही शूज लगे हुए हैं।

और बाहर एक टेबल रखी हुई है उसे टेबल के ऊपर खुले और अलग अलग कलर के शूज रखे हैं।

और एक खंभा लगा हुआ है जिसके ऊपर से तार जा रहे हैं।

और इस पहाड़ के ऊपर बहोत सारे लोग चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिनके अलग अलग कलर हैं व्हाइट ब्लैक ग्रे सभी अलग कलर के हैं।

और चारों तरफ दीवार के ऊपर ग्रिल लगी हुए है।

उस टेबल के ऊपर कुछ सॉस वगैरा का सामान रखा हुआ है।

जिसके ऊपर अलग अलग तरह के प्लेयर्स दिख रहे हैं।

और इसके सामने से एक पेड़ लगा हुआ है जिसके चारों तरफ जाली की हुई है।

यह एक मंदिर है इस मंदिर के अंदर बहोत सारी मूर्तियां रखी हुई है।

और एक गेट लगा हुआ है उसे गेट के अंदर वाहन जा रहे हैं कार ट्रैक्टर बाइक सभी जा रहे हैं।

और इसके सामने बहोत बड़े बड़े हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और इसके अंदर सड़क पर एक बाइक खड़ी हुई है।